और एक बड़ा सा गेट है जो नीले कलर का है उसके साइड में एक बैनर भी लगा हुआ है।

इस फोटो में एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिस पर लाल कलर की ईट छपी हुई दिखाई दे रही हैं।

फ्लावर पॉट के अंदर कुछ फूल दिखाई दे रहे हैं व साइडो में बेल दिखाई दे रही है।

और इस डिवाइगर में कुछ पत्थर पड़े हुए हैं और कुछ घास खड़ी है।

और आगे की तरफ केले रखे हैं और कुछ अगरबत्ती और थाली रखी हुई है।

इस फोटो के अंदर मिनी मेट्रो का शोरूम दिखाया गया है जिसमें सामने कुछ मिनी मेट्रो खड़ी है।

इस फोटो के अंदर की दुकान दिखाई गई है जिसका शीशे का गेट लगा हुआ है।

जिसमें नीचे मैट बिछी हुई है और इस पर कुछ बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो के अंदर एक नदी निकल रही है जिसमें पानी चल रहा है और कुछ बुलबुले दिखाई दे रहे हैं।

और साइडो मे किनारो पर छोटी छोटी घास खड़ी है और झाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

इनके बीच से आसमान दिखाई दे रहा है जो सफेद कलर का दिखाई दे रहा है।

सामने कुछ बिल्डिंगें बनी हुई हैं जो सफेद कलर की हैं।

साइड में छोटे छोटे बैनर लगे हुए हैं जिन पर सफेद कलर के से कुछ लिखा हुआ है।

इन फ्लावर पॉट का कलर लाल है और इनमें कुछ पोधै खड़े हैं।

और बीच में कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी दिखाई दे रही हैं।

और ऊपर छत में सफेद कलर है और कुछ लाइटें जल रही हैं।

और यहां पर कुछ खड़ी हैं जिन पर बड़ी-बड़ी रोड लगी हुई जो चल रही हैं।

सामने की तरफ बीच में एक बड़ी सी बॉल है जो लाल कलर की है।

और एक साइड में एक घर है जिसके ऊपर एक डिश दिखाई दे रही है नीचे एक स्कूटी खड़ी है।

ऊपर कुछ पंख चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और नीचे डस्टबिन में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने कुछ बिजली की तार भी दिखाई गई हैं वे बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इस महिला ने साड़ी पहनी है और इसके पीछे लाल कलर की मैट बिछी हुई है।

पीछे की तरफ एक बड़ा सा पहाड़ है जिसके ऊपर कुछ पेड़ खड़े हैं और साइडो में कुछ छोटी छोटी घास खड़ी है।

इस फोटो के अंदर सामने की तरफ कुछ टेबल पड़ी हैं जिन पर शीशा लगा हुआ है।

इस फोटो के अंदर एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखाया गया है।

इन टैंकरों में पाइप लगे हुए हैं जो की पानी के पाइप हैं।

नीचे एक गेट लगा हुआ है जिसमें शीशा लगा हुआ है।

पीछे की तरफ एक लड़की जा रही है जिसने सफेद कलर का दुपट्टा ओढ़ा है और नीली ड्रेस पहनी हुई है।